यहाँ पे एक चिकित्सक कखो नज़र में आ रहा है यहाँ पे चिकित्सा करने के लिए वो जो-जो सामान लिखती है वो सारे सामान यहाँ पे सजा हुआ है इसके अलावा यहाँ पे एक घड़ी है जिसमे एक बज के पांच मिनिट बज रहा है।

सफ़ेद कलर में कुछ घर यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी है बहुत हरे-भरे कलर में और इसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल भी देखने को मिल रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे पेन्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी देखने को मिल रहा है इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जलता हुआ लाइट भी देखने को मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ पे दो आदमी भी नज़र आ रहा है।

यहां पे एक पक्षी देखने के लिए मिल रहा है और ये जो पक्षी है एक पैर में खड़ा हुआ है।

--और यहाँ पे कुछ सीढ़ियां भी नजर मे आ रहा है और कुछ आदमी भी यहां पे अ देखने को मिल रहे है और यहां पे दूर मे बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है।